इसमें बहुत सारी खिड़की दिखाई दे रहे हैं।

जिसके ऊपर अंग्रेजी भाषा में एशियन पेंट्स लिखा हुआ ह--

आगे मुझे एक सफेद रंग का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

यहां स्लीपवेल लिखा हुआ है।

जिसका रंग पीला है और उसके नीचे नीले रंग के खट्टी से खड़ा किया गया है।

सामने की ओर सुखा धूला और पीछे की ओर हरे हरे जंगल घास दिखाई दे रहे है।

और उसने भूरे रंग का बेस्ट पहना हुआ है।

पीछे तरफ एक घर का बहोत बड़ा दरवाजा दिखाई दे रहा है।

दरवाजे के सामने दो व्यक्ति खड़े हैं।

जहां कई सारे बॉक्सेस में फोन इयरफोन और चार्जर सब रखे हुए दिखाई दे रहे है।

मंदिर में कई व्यक्ति बाहर की ओर खड़े और कई व्यक्ति अंदर की ओर खड़े दिखाई दे रहे हैं।

एक व्यक्ति ने मुंह में मास्क लगाया हुआ है।

जिनके हाथ में तिरंगा दिखाई दे रहा है।

आगे मुझे एक बहुत बड़ा दुकान दिखाई दे रहा है।

और एक बाइक दिखाई दे रहा है।

नीचे की तरफ कई बॉक्सेस रखे हुए हैं।

बोट में हरे रंग के अंग्रेजी भाषा में बीर पड़ा टी गार्डेन और बहुत कुछ लिखा हुआ है।

और कुछ पाइपे भी रखे गए हैं।

आगे एक ऑफिस का तस्वीर दिखाया गया है।

और पीछे की ओर दो चेयर दिखाई दे रहे हैं।

आगे एक घर दिखाई दे रहा है।

नीचे जमीन पर कारपेट बिछाया गया है।

घर के आगे एक बाइक और एक स्कूटी खड़ा दिखाई दे रहा है।

जिनमें से एक का चेहरा ब्लर है।

फ्रेम के अंदर हाथी का फोटो दिखाई दे रहा है।

जहां तीन पुरुष और एक औरत दिखाई दे रही है।